यहाँ पर एक बड़ा सा अपार्टमेंट टाइप का बिल्डिंग दिखइ दे रहा है जहा पे एक लोहे का बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है।

एक बड़ा सा बिल्डिंग है जो गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल का बिल्डिंग है जो--

अ सेक्टर फोर्टी नाइन डी_सी_एस_डी --

साइड में लोहे का रेलिंग है यहा पे तो गेट दिखाई दे रहा है वाइट कलर का जो अभी बंद है।

यही मिटटी का जगह है जो साइड वाल लेके खेडा हुआ है सामने में बड़ा सा गेट है जो लोहे का ब्लैक कलर का गेट है।

उपर में लाइट जल रहा है सामने में एक बन्दा चेयर में बेटा है सामने में मु कर के--

यहाँ पर एक पक्का रास्ता है रास्ते के पास एक बड़ा सा तीन ताला बिल्डिंग है जो मेहरून कलर पर वाइट कलर का बिल्डिंग है।

दीवाल में प्रोजेक्टर हुआ है जहा पर एक बाँदा प्रोजेक्टर में प्रोजेक्ट समझा रहा है।

सामने ब्लैक कलर का एक टेबल है टेबल के पास में दो साइड में चेयर में दो दूर करके बंदा बेठा है।

ये एक ऑफिस है ऑफिस के अंदर में एक आदमी बेठा है चेयर में उसके सामने रेड कलर का टेबल है।

वॉल वाइट कलर का है में तीनो बैलून है ए--

यहाँ पे एक गोडाउन है जो फैक्ट्री का बिल्डिंग है जहां पे टीना का सेड है वल --

बैग लेके आया है बैग में बोहोत से सामान का बोरी है और यहाँ पे कुछ बन्दा खड़ा है सब सामान पकड़ के --

राईट में रैप में कुछ साडी सजा के रखा हुआ ह--

ये एक जिम सेंटर है जहा पे दोड़ने का तिन मशीन दिखाई दे रहा है जहा पे दोडना पड़ता है दोड के वेट लोस करना पड़ता है।

मछली का जो बिल्टी है वहा पे पाइप देके पानी डाल रहा ह पास बना हे--

ऊपर में भी मछली वाला बेठा है ऊपर में भी कुछ जाकेट वगैरा टंगा के रखा है बिकने के लिए--

बी_एम_डबलिउ का और ये सब कार खड़ी है वो बिकने वाला है।

सडको मे पास में एक रेलवे दिख दिखाई दे रहा है रेलवे की गार्डवाल दिखाई दे रहा है उसके बहार उस साइड मे बड़ा सा एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक बिल्डिंग क अन्दर में एक रिसेप्शन दिखाई दे रहा है जहा पर रिसेप्शन का वाइट कलर का पोडियम --

घर का गेट है बेडरूम का वो मैरून कलर का है।

यहा पे एक बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है वाइट कलर का--

ड्रेस पहन के टोपी पहन के पानी दे रहा है पाइप में --

रोड दिखाई दे रहा है रोड के पास में एक पार्किंग का एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ पे कुछसारे भाई कुछ सारे चर्चा का गाडी--

यहा पे एक चार्ज दिखाई देरा है रात का सीन दिखाई देरा है चार्ज के उपर में--

जो गम्बज़ दिखाई दे रहा है वाइट कलर का मंदिर है सामने में एक प्लेटफार्म दिखाई दे रहा है वो सा ढला हुआ है पिलर देके--

ये एक बड़ा स्टैंड है ये एक रात का चित्र है साइड में बहुत सारा बड़ा बड़ा लाइट जल रह है।

वापे विष वाग्मा गाड़ा हैं यहा पे विसागामी बा--

ऑरेंज कलर का जींस पहन के है ओ लोग पूजा कर रहे यहां पे--

ये एक शो रूम है जहाँ पे एक जिप गाडी खड़ा है ब्लैक कलर का थार गाडी है ये--

बड़े बड़े में पासिंग करके रखा है संदिग्ध स्टेडियम का अंदर का चित्र है।

यहाँ पे का दूकान है जिसका नाम है सन्ति बनटी सुपर फैमिली वैष्णोढाबा --

ये सब सजा हुआ है ब्लैक कलर का वाइट कलर का--

वाइट कलर का यहाँ पर कुछ आदमी खाने के लिए आया ह--

उस साइड में मान दिखाई दे रा ढाला टाइप का--

साइड में दो चा चाका गाडी है एक वाइट कलर का एक ब्लैक कलर का--

इसका बिल्डिंग के सामने तीन चार चक्का गाडी खड़ी है रस्ते के --

लोहे का चेयर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है वहा पे साइड में एक टेबल है टेबल --

वांडा का वाहे लागे जिगर बगेरा--

रोटी ना देखे साइड वोल किना है।

अम्म पिलो देखो एक बड़ा सा बेड है बेड में वाइट कलर का--

पेर के बाहर में भी कुछ गाडी खड़ी है स्कूलो का--

वाइट कलर का खड़ी है यहा पे टीना का सेड में--

इसीलिए बैलून देके सचा हुआ है हैप्पी बर्थडे प्लाकेट लगा हुआ ह--

केबिन दिखाई देरा है उसके साइड में कुछ स्टील का चेयर दिखाई देरा ह--

ये एक रेस्टोरेंट का अन्दर का चित्त्र है जहा पे एक वुडेन का--

ये एक ऑफिस का बिल्डिंग है एक तला बिल्डिंग --

उर चार चका गाडी खड़ी है बुलेरो कार खड़ी है सब वाईट कलर का गाडी पार्किंग करके रखा है।